दृश्य दिखाई दे रहे है जहा चारो तरफ महिलाये पूजा कर रही है वही एक युवक फोटो खिंचता नजर आ रहा है।

कुछ दो पहिया वाहन खड़े हुए है बैंक के पीछे बड़े बड़े पेड पौधे दिखाई दे रहे है।

इस चित्र मे हमे स्कूल में होने वाला रंगा रंगा कार्यक्रम का दृश्य दिखाई दे रहा हैं।

इस चित्र मे हमे किसी निर्माणाधीन बिल्डिंग का दृश्य दिखाई दे रहा है।

इस चित्र मे हमे दक्षिण भारत की एक महिला अपने नृत्य प्रदर्शन करती नजर आ रही है वो स्टेज पे अपना डांस फॉर्म दिखा रही है।

जहां पे बहुत सुंदर लाइटों की व्यवस्था की गई है इस प्रवेश द्वार को फूलों से बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है प्रवेशद्वार के बाहर भारी संख्या में लोग दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में कुछ स्कूली बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे है।

इस चित्र मे हमें जैनीयों के पंडित दिखाई दे रहे है।

इस चित्र मे हमे स्कुली बच्चो के द्वारा बनायी गयी रंगोली दिखाई जा रही है जहा बच्चे बहुत सुंदर रंगोली बना रहे है स्कुल के शटर के बाहर रंगोली बना रहे है।

वहीं स्क्रीन पे अपनी आगामी योजनाओ को दिखाता हुआ एक कर्मचारी दिखाई दे रहा है।

मजदूरों ने बोरियो में भर के सहेज रखते हुए दिखाई दे रहे है चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है।

वहा रेत गिट्टी पड़ी दिखाई दे रहे है।

इस चित्र मे कुछ विदेशी व्यक्ती हमे भारतीय संस्कृती कि झलक साडी और पजामा कुर्ता पेहने दिखाई दे रहे है।

ये एक तीन मंजिला बिल्डिंग मे स्तिथ है यहाँ से ऑफिस जाती सडक दिखाई दे रही है।

इस चित्र मे हमे एक बी एम डब्लू दिखाई दे रही है जोकी एक महिला खरीद रही है।

बहुत सारे मेहमान आशीर्वाद के साथ दुल्हन को विदा करते दिखाई दे रहे है।